यह एक दुकान है यहां पे बहुत वस्तुएं रखे गए हैं।

बहुत लाइट लगाए गए हैं यहां पे एक ठो पंखे हैं यहां पे फूल का डेकोरेशन किया गया है।

बड़े बड़े चट्टान है और यहां पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं।

बहुत पेड़ है एक पेड़ दुकान के पास है जो आम का है व हरा कलर का है।

यहां पे बहुत बच्चे हैंजो अलग अलग कपड़े पहने हैं यहां पे जूते पहने हैं।

यहां पे सब बच्चे खेल रहे है सबका जूता अलग अलग कलर का है।

यहां पे बहुत घर हैं। घर बहुत बड़े-बड़े हैं। यहां पे घर सफेद कलर का है।

यहाँ मछली का चित्र बनाया गया है लाल कलर में।

सादे कलर के लाइट लगाए गए हैं यहां पे बहोत गाड़ी है गाड़ी ग्लैमर है स्कूटी है।

यहां पे एक दो खजूर का पेड़ है यहां बहुत बड़ा चट्टान है यहां पे बहुत बड़े पहाड़ है।

पत्थर है का काला कलर में और यहां पे बहुत पेड़ बड़े बड़े हैं।

एक बहुत तार लगाया गया हैजो पोल में लगाया गया है और यहां पर दीवार में बहुत ई चित्र बनाया गया है।

मंदिर का नाम है बाबा जागेसर नाथ मंदिर मंदिर के अंदर मे आदमी है दो ठो।